नीचे की ओर जमीन पर साइकिल की परछाई नजर आ रही है।

बस में सीढ़ी लगी हुई है जिस पर एक इंसान चढ़ता हुआ दिख रहा है।

ऊपर की ओर बहुत सी लाइटें जलती हुई दिख रही हैं।

सभी लोगो की परछाई जमीन में दिखाई दे रही है।

जिस पर हिंदी में व्हाइट कलर से बस्तर डेरी फार्म लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह पिक्चर जामा मस्जिद के अंदर की दिखाई दे रही है।

मेट्रो ट्रेन के सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे की ओर एक जी _सी_बी मशीन भी दिखाई दे रही है।

पीछे की ओर ब्लैक कलर का का बोर्ड लगा हुआ है।

जिसमे पीछे की ओर दीवाल पर एक गिटार रखा हुआ है।

सामने की टेबल पर मेनू और कुछ ग्लास टिशु और एक पानी की बोतल रखी हुई दिखाई दे रही है।

पिंक कलर का टब रखा हुआ दिख रहा है।

और कुछ बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की ओर बहुत से बादल घिरे हुए दिख रहे हैं।

छोटी छोटी घास लगी हुई है और साइड साइड में पौधे।

इस पिक्चर में एक पेट्रोल पंप दिखाइए दे रहा है।

और साइड में तिरंगा बना हुआ भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत से हल्के और भारी डंबल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की ओर पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

और बहुत सी मूर्तियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

और बहुत से घंटा लटका हुआ दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग भी खड़े हैं।

इस पिक्चर में एक यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है।